वहां पर पूजा का सामान रखा गया है।

दीवान गद्दे हर तरह के मिलेंगे यहां पे आपको सोफा सेट्स डाइनिंग टेबल टेबल ।

यह तस्वीर आपको टायर्स की दर्शायी गई हैं जैसा की आप तस्वीर में देख ही पा रहें हैं यहाँ पर इस दुकान में हर तरह के टायर उपलब्ध हैं।

यहां पर यह यहीं पर एक बार कंपार्टमेंट की तस्वीर हमें दिखाई गई है।

यह सामने वाला रूम बंद दिखाई--

और साथी में यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर --

यही पर ही गाय भैंसे का दूध भी निकाला जाता है।

अ बहोत सुंदर से अ खाने अ बहोत सुंदर सी डेकोरेशन की गई है यहां पर खाने --

अनेक ही स्टॉल्स लगाई गई हैं।

यह तस्वीर बैंक्वेट हॉल के शादी समारोह के स्टेज की दर्शाई गई हैं।

जैसा की तस्वीर में देखा ही पा रहे हैं यहां पर--

के पर्दे उपलब्ध है जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हैं दुकानदार एक एक पर्दे की क्वॉलिटी --

बेल्ट पर्स इत्यादि सभी फैशनेबल --

फोन चलाते हुए वेट करता नजर आ रहा है यहां पर कई सारी चेयर रखी हुई है वाटर कूलर मशीन दिखाई दे रही है।

सड़क के किनारे बनी हुई एक किराना स्टोअर की दुकान नजर आ रही है।

कलरफुल लाइट्स दिख रही हैं टेबल चेयर रखे हुए हैं।

और यहां पर डेकोरेशन के लिए--

और यहाँ पर एस_बी_आई बैंक का--

फोटो पोस्टर लगा हुआ दिखाई रहा है।